य बोहोत सुंदर जगह है यहाँ पे एक झूला है। झूला में एक बच्चा हँसते-हँसते झूला झूल रहा है।

दूर से पत्ता अ हरा-हरा पत्तियाँ दिखाई दे रहा है।

और यहाँ बहुत अच्छा जगह भी है। बहुत सुंदर लग रहा है।

और उसके उपर छत पे बल्ब लगा हुआ है। एक बड़ा गद्दा है।

और पक्का का रूम है। सीसा उसा है सब कुछ अच्छा है।